एक गेट दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

एक नीचे प्लास्टिक के चार पांच डिब्बे दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जूतों की दुकान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

एक घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसके बीच में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

एक पीले रंग का झोला दिखाई दे रहा है।

फर्श दिखाई दे रहा है जिसका रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है।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

गाड़ी दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

पीछे एक मुग़ल टावर दिखाई दे रहे हैं।

हरे हरे घास दिखाई दे रहे हैं एक दीवार दिखाई दे रहा है।

के उस पार एक घर दिखाई दे रहा है।

कार दिखाई दे रहे है ठीक आगे घर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर बहोत सारी पुरानी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

एक वाशिंग मशीन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।